और कई तरह के कलरफुल कपड़े लग टंगे हुए हैं ये एक शॉप लग रही है कपड़े की --

ये बहुत बड़ा सा मंदिर है मंदिर के सामने ही आदमी एक खड़ा हुआ है जो इधर ही देख रहा है।

लाइनिंग लाइनिंग का टी-शर्ट पहना हुआ है।

और कुछ चीज की सुंदरता को देख रहा है।

इसके अगल-बगल फूल पौधे लगे हुए हैं।

और कुछ भुट्टे पके दिख रहे हैं। कुछ पे हरा हरा भी उनकी पत्तियां दिख रही है और नीचे पुवाल-उवाल दिख रहा है और उसके नीचे भुट्टा रखा हुआ है।

दो बच्चे तीन बच्चे काले कलर के चितकबरे शर्ट पहने हुए हैं एक बच्चा तिरंगा लिया हुआ है हाथ में --

और कुछ मछलियों को लोग काट के भी रखे हुए हैं और उधर बहुत जो है की मछलियां जभी जिंदा दिख रही हैं।

सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है यह कोई बहुत बड़ा टावर है।

उसके बगल में बहुत बड़ा एक पिलर लगा हुआ है।

और गेट के सामने आठ दस लोग खड़े हैं एक आदमी इसमें पीले कलर का टी-शर्ट पहना है।

यहां पे बहुत सारे लोग मार्केटिंग के लिए आए हुए हैं।

सामने अलग-अलग डिपार्टमेंट की दुकानें लगी हुई हैं और लोग मॉल में सामान खरीद रहे हैं कोई आगे पीछे जा रहा है।